एक मट्टी से बना हुआ घड़ा भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

लोगों के बैठने के लिए कंक्रीट की कुर्सियों का व्यवस्था--

गाड़ी पर सुजुकी कंपनी का लोगो लगा हुआ है।

यहां की दीवारो और पिलरो पर हरे रंग का पेंट किया गया है।

अंदर से नक्काशी बनी हुई दिखाई दे रही है।

यह सभी रंग बिरंगे दिखाई दे रहे हैं।

वजन नापने वाला तराजू और कुछ बटखड़े भी रखे हुए दिखाई दे रहे है।

कई सारे तरह तरह के पोस्टर्स चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं।

तस्वीर में सामने एक सफेद कलर की बिल्डिंग बनी हुई दिखाई दे रही है।

बिजली का खंबा भी नजर आ रहा है और कई सारे बिजली की तारे भी दिखाई दे रही हैं।

कपड़ों की दुकान की है यहां कई सारे अलग अलग रैक्स बने हुए हैं।

यहां कई सारे लोग यहां खरीदारी करने के उद्देश्य से मौजूद है।

इत्यादि चीजें सजा कर रखी गई है।

इस पर टाटा कंपनी का लोगो लगा हुआ है।

सामने की ओर नीले रंग की टी शर्ट पहने एक शख्स जिसने हाथों में झोला टांग रखा है।

और इनकी तस्वीरें खींचता हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां एक स्टेज पर सफेद कलर की सोफा रखा गया है।

सफेद कलर के अक्षर से कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां कई सारे लोग भी मौजूद दिखाई दे रहे हैं। स्कूटी सवार--

यहां कई सारी बैंचो को कतार से सजाया गया है।

इसमें कई सारे विद्यार्थी बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

सामने की ओर एक शख्स इन्हें पढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है।

तस्वीर किसी होटल रूम का है जहाँ सामने की ओर पारदर्शी शीशा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

बिस्तर रखाव गया है जिसपर सफेद कलर की चादर बिछाई गई है।

यहां सामने की ओर कुछ लोग अभ्यास करते हुए दिखाई दे रहे है।

यहां कई सारे लोग एक जगह इकट्ठा दिखाई दे रहे हैं।

डिजाइन दार लाइटो से सजावट की गई है।

के बड़े बड़े पोस्टर्स भी दिखाई दे रहे हैं।

डिजाइन दार पेटर्न्स बने हुए हैं।

एक बड़ी सी टेबल लगी हुई है जिस पर अलग अलग प्रकार के कई सारी चीजें सजा कर रखी गई है।

दो महिलाएं दाईं ओर खड़ी दिखाई दे रही हैं।

यहां भगवान शिव की शिवलिंग की पूजा की जा रही है।

यहां कई सारे लोग मीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

लाइटें कतार से लगी हुई दिखाई दे रही है।

उसके दरवाजे पर पारदर्शी शीशा लगा है जिसके कारण बाहर से ही अंदर का सब कुछ दिखाई दे रहा है।

जमीन पर पानी जमा हुआ है इबा हरे हरे घास भी उगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

आसमान में सफेद बादल छाए हुए नजर आ रहे हैं।

पार्क में कुछ लोग योगाभ्यास करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक सख्त नजर आ रहा है जिसने काले रंग की पोशाक पानी है।